ये एक अ गार्डन दिखाई दे रहा है जहा पे एक अ नकली एरोप्लेन को यहा पे अह सेट अप किया गया है यहा पे बहुत सारे यहा पे--

पे एक बडी सी अह बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे केंद्र परिसर लिखा हुआ है और यहाँ पे हा चारों तरफ यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

और यह रास्ते के बीच मे एक गोल सा बना हुआ है और उसमे एक बड़ी सी अह पेड़ लगी हुई है।

यहाँ पे एक चेअर लगा हुआ है जिसमें लोग बैठ सकते है और यहाँ पे दीवार पे यहाँ पे कुछ लिखा गया है रमाई पार्क लिखा है ये।

यहा पे सिडिया दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है ग्रील्स दिखाई दे रही है और ये रास्ते मे कोई भी नहीं दिख रहा है।